सादी पार्टी आदि के लिए यहाँ पर सभी प्रकार की मालाए उपलब्ध हैं। यह मालाए देखने में बहोत सुंदर लग रही हैं। इन्हे बहोत अच्छी तरीके से सजाया गया है।

यह है एक चर्च है जिसमें प्रभु ईसा मसीह का चित्र लगाया गया है। इसमें क्रिश्चियनो की गहरी आस्था होती है। यहाँ पर आकर बे अपनी प्रार्थना गॉड के सामने प्रस्तुत करते हैं।